पेड़ की पत्तियों की छाव के नीचे बे बच्चा झूला झूल रहा है और आनंदित हो --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

तैयारी कर रहे हैं और कुछ लोग अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं यहाँ पे बच्चे भी हैं बूढ़े भी हैं और यंग भी है कई कलर में है ग्रीन येलो --

यहाँ पर स्कूल शिक्षा का दिखाई दे रहा है यहाँ पर भगत सिंह की फोटो लगी हुई है और --

ज्ञानार्थ प्रवेश सेवार्थ प्रस्थान उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत --

झरना दिखाई दे रहा है जिसे वॉटरफॉल कहा जाता है पहाड़ियों के बीच पानी बह रहा है बहाव इतना खूबसूरत है और पहाड़ के पीछे --

और काले येलो कलर के पत्थर और नीचे पानी ही पानी बहता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत नजारा लग रहा है ।

पहनकर एक बहुत भारी चीज को उठा रहा है अपनी शोल्डर के अनुसार --

कई प्रकार के एडवाइजर पोस्टर टंगे हुए हैं यहाँ पर--

प्लाजा अंटील पार्क हैं।

मेन सिटी को बहुत खूबसूरती बखूबी दिखाया जा रहा है नजारा बहुत --

राइट में जो पंडाल लगा हुआ है दूर भी बैठे हुए बहुत ही खुबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है येलो और पिंक और रेड सी --

रेड कलर का गमला हुआ है और वहाँ पे ग्रीन --

और पिल्लर भी दिखाई दे रहे हैं चांदी की मूर्ति दिखाई दे रहे हैं रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ व्हाइट कलर की--

यहाँ पर डाक्टर के के घुरदास क्लिनिक दिखाई दे रहा है जिसमे व्हाइट कलर का शटर लगा हुआ है।

कथई कलर की दीवार पुताई हुई है पोस्टर भी रेड कलर का है ।

और यहाँ लोग श्र अपनी पूजा अर्चना याचना के लिए जा रहै हैं ।

यहाँ पर एक कार खड़ी दिखाई दे रही है जो कबाड़ हैं।

दीवार है उसमें तार का घेरा लगा हुआ है और एक तार बिल्कुल खुली हुई है और एक व्यक्ति भी नज़र आ रहा है जिसको सुधार रहा है इस तार को--

कॉलेज दिखाई दे रहा है कॉलेज के सामने एक बड़ा पुल खड़ा हुआ है और एक पेड़ लगा हुआ है।

पेड़ में चौड़ेदार चौड़े पत्ते है नीचे जमीन दिखायी दे रही है।

बहुत ही रेड कलर का बहुत सारा सामान स्टोरेज --

जर्सी पहनी हुई है शर्ट पहनी हुई है लेडीज और जेंट्स दोनों हैं ।

बस का कलर व्हाइट है और बस में इतने यात्री है इतने यात्री है कि--

लगेज जहाँ रखते है वहाँ पर उधर भी बैठे हुए हैं और कुछ लोग वहाँ पर पुलिस खड़े हुए हैं ।

चारों तरफ लाईटिंग रेड और ऑरेंज में ही दिखाई दे रहा है लेकिन कैंडल लाइट डिनर ही कहा जाएगा।

अर ब्लू कलर का पोश --

छ: डॉक्टर खड़े हुए हैं जो सेल्फी ले रहै हैं और छ: ने --